जो ब्लैक कलर का है जिसे डेकोरेट किया हुआ है।

यह एक मेले का दृश्य है।

जिसके अंदर बच्चे और लोग बैठे हुए है।

और लाइट भी दिख रही है।

यहां पर कुछ लोग खड़े हैं।

बहोत दूर दूर तक पेड़ दिखाई दे रहे है।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

पूजा का सामान रखा हुआ है।

यहां पर एक सड़क दिखाई दे रही--

और पेड़ भी दिख रहा है।

यह एक ऑप्टिकल की शॉप हैं।

और गेट पर एक आदमी खड़ा है।

जिसमें चेयर और टेबल लगे हैं।

यहां एक टोल प्लाजा भी दिख रहा है।

पेड़ पौधे भीं दिख रहें हैं।